मंदिर के बहार मूर्तियों के नाम है मूर्तियों को सजाया गया है मूर्तिया टाइल्स के एक ऊंचे से पत्थर पर रखी हुई है।

तस्वीर मे माला ब्येरमजी जीजीभॉय मेडिकल कॉलेज दिक्षीता आहे. जिसके बाहर एक एम्ब्युलेन्स खड़ी है.

मला एक पियानो दिक्षिता आहे जिसपर बहुत सारे बटन बने हुए है पियानो के बटन काले और सफेद रंग के है पियानो बहुत सुंदर है यह एक मेज पर रखा हुआ है।

तस्वीर मे माला एक बंजर पहाड़ दिक्षिता आहे जहा पर घास--